एक आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

रोड के बीच में एक चौक बना हुआ भी दिखाई दे रहा है।

अलमारियों पे सुंदर सुंदर आकृति और रंग बिरंगा कलर करा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें रोड के पास का नजारा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक पूजा स्थल दिखाई दे रहा है।

दुकान पर प्लास्टिक नेकलेस रबर बैंड जुड़ा आदि जैसा सामान टांगा हुआ दिखाई दे रहा है।